ये एक बच्चों का पार्क है जो देखने से तो बहोत अच्छा लग रहा है सामने कुछ लोग खड़े हैं जो की पानी पुरी खा रहे हैं।

ये फोटो देख के लग रहा है ये एक पार्क है शायद बच्चों का पार्क है पार्क का नाम है फन सिटी जो कि पूर्णियां के--